यह एक जिमर है यो लड़का जिम कर रहा है और जिम हमारे लिए बहुत फायदेमंद चीज है जिम हमलोग को --

जानवर भी घास को चर रहे हैं। बहुत मस्ती से घास को खा रहे हैं और तालाब पहाड़ों का नजारा कुछ --

समुद्र है इस समुद्र में चारों और पानी ही अपनी नजर आ रहे हैं और समुद्र की पानी बहुत ही साफ नजर आ रहे हैं और समुद्र में पानी के अंदर --